ये चित्र एक सड़क का है इसमें सामने बहुत सारी गाड़ियां खड़ी हुई ह--

कारें आती जाती नजर आ रही हैं दो कुर्सियां भी दिखाई दे रही हैं बहुत सी बाइके भी खड़ी हुई हैं--

दूर दो व्यक्ति खड़े नजर आ रहे हैं हरे रंग के पौधे बहोत ही सुंदर लग रहे हैं।

चार पांच बोतलें रखी नजर आ रही हैं नीले रंग से--

कसरत की मशीनें रखी हुई है बहोत सारे झूले भी दिखाई दे रहे है ये छोटे छोटे गट्टों में--

इस त चित्र बहोत सारे पाने और पलाश रखे दिखाई दे रहे हैं पीछे की तरफ पेटीएम स्कैनर बोर्ड भी रखा हुआ है।

ये चित्र एक ज्वेलरी री शॉप का है इसमें बहोत सारे हार बुंदे रखे नजर आ रहे हैं डब्बों में भी बहुत सारी चीजें रखी दिखाई दे रही हैं।

ये चित्र में एक रिसेप्शन दिख रहा है ऊपर जीने जाते हुए दिखाई दे रहे हैं एक कुर्सी--

पत्थर और क्रीम रंग से रंगा हुआ है सामने कांच का दरवाजा भी दिखाई दे--

ये चित्र एक घर का है इसमें सामने एक काले रंग का बड़ा गेट लगा हुआ है ये घर हरे रंग से रंगा हुआ है।

गोल गेट बना हुआ है नीचे की तरफ बहुत सी महिलाएं खड़े होकर फोटो खिंचवाती नजर आ रही हैं ऊपर जीने दिए हुए ह--

चार सोफे रखे हुए हैं अंदर कैबिन बना है उसमें भी कुर्सियां और लैपटॉप रखा हुआ है--

सोफा रखा दिखाई दे रहा है एक कुंडी पीले रंग की जिसमें पौधा लगा हुआ है सामने टेबल भी रखी दिखाई दे रही है ऊपर की तरफ लैंप लगे--

ये एक तन्नू जनरल स्टोर का बोर्ड दिख दिख रहा है नीचे जनरल स्टोर है इसमें बहुत सारा सामान --

चित्र एक रेस्टोरेंट का है इसमें बहुत से व्यक्ति बैठकर कुछ खा पी रहे हैं सामने की तरफ--

काउंटर बना हुआ है उस पर चॉकलेट्स का डिब्बा भी रखा हुआ है व्यक्ति इसमें खाते पीते नजर आ रहे हैं।

ये चित्र का फूड हट का है इसमें बहुत सारी कुर्सी टेबल रखे हुए हैं--

टेबल के ऊपर मेन्यू कार्ड भी रखा हुआ है पीछे छोटा सा पंखा लगा दिखाई दे रहा है यह फूड हट बहुत ही सुंदर लग रहा है.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

नीचे की तरफ बहुत सारी चीजें उस दुकान में दिख रही हैं एक सफेद रंग का सलवार कुर्ता पहना व्यक्ति खड़ा हुआ है एक व्यक्ति--

एक बोर्ड लगा हुआ है मजदूर काम करते दिखाई दे रहे हैं।

इस चित्र में एक पेट्रोल पंप दिखाई दे रहा है बहुत सारे व्यक्ति पेट्रोल की लाइन में लगे नजर आ रहे ह--.

जो बहुत ही सुंदर लग रही हैं ऊपर की तरफ बिजली के तार जाते दिखाई दे रहे हैं--